पे दौड़ने का खेल होता है | यहाँ पे एक चिड़िया भी बैठी हुई है |

ये किसी गांव के घर का दृश्य है जिसमे --

पुल का बनावट बहुत ही आधुनिक तरिके से किया गया है।

डेकोरेशन यहाँ का बोहोत ही बेहतर है साथ ही फूल से आधुनिक तौरपे डेकोरेशन किया गया है।

यह बच्चो के खिलौने जैसे पैराशूट --

सारे बच्चे किसी कम्पटीशन में पार्टिसिपेट किये हुए है बहुत लोग --

यह किसी शादी के पंडाल का चित्र है।

ये किसी सर्विसिंग सेंटर दुकान का चित्र है जहां --

जिसमे कुछ दिख नहीं रहा है। सामने की तरफ एक टावर लगा हुआ है। --

सामन रखी हुई है बाहर नमक की बोरियाँ रखी है |

बाहर में फील्ड है और धूप खिली-खिली नजर आ रही है।

और मौसम अभी का साफ़ नजर आ रहा है ऊप --

और आसमान ऊपर का बिल्कुल छ साफ़ है और लालिमा भी साई हुई छाई हुई है |

इस चित्र में इंडिया रेफरी दो टीम है कुछ नदी में ढूंढ़ने की कोशिश कर रही है |

पेंसिल रबर कटर इत्यादि समान रखे हुए हैं।

पे शर्मा ऑडियो नाम का बैनर टंगा हुआ है।

इधर पेर -पौधे लगे हुए हैं।

यह एस.एन.एस. कॉलेज का तस्वीर है जो हाजीपुर --

यहाँ पे आर.एस. कॉम्प्लैक्स लिखा हुआ है | सामने एक बैनर टंगी हुई है जिसपे इकोवेव लिखा हुआ है |

में रीड क्लास रूम लिखा हुआ है।

पे नीचे में कुछ लोग बाहार में चल लए हैं। यहाँ पे बोहोत सारी बाइके और स्कूटर लगी हुई हैं।

जिसके नीदे दो-चार साइकिले लगी हुई है।